नीचे एक कार्पेट बिछी हुई है जो की काले और सफ़ेद रंग की देखी जा सकती है यह देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है।

येलो कलर का भी कुछ लाइट पट्टी जैसा दिखाई जा रहा है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है इसकी दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग हैं ।

यह एक बी.एच.के हाउस दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहोत सारे सफ़ेद रंग की लाइटे लगी हुई देखी जा सकती है।

सोफे को रखा गया है ऊपर बहुत अच्छी - अच्छी लाइटे भी डिजाईनदार लाइटें दिखाई दे रही है।

ये एक आदमी है जोकि कुर्सी पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बाल कटवाने के लिए आया हुआ हैं ।

यहाँ पर बहोत सारी जिम करने की इंस्टूमेंट रखे हुए है सामने बहुत सारी लाइटे जलती हुई देखी जा सकती है।

यहाँ पर एक सीधी रोड दिखाई दे रही है जिसकी दूसरी तरफ बोहत सारी पेट्रोल टन्की बड़ी -सी दिखाई दे रही हैं ।

इसकी दूसरी तरफ नीला आकाश साफ़ देखा जा सकता है सामने की तरफ एक बोहत बड़ा- सा गेट लगा हुआ है जोकि एक कराकट का बना हुआ गेट दिखाई दे रहा है जो देखने में बोहत ही अच--

यहाँ पर एक व्यक्ति को देखा जा सकता है जोकि एक बड़े- से ट्राईपोड को लिए खड़ा हुआ है और वह सामने की भूमि की नाप लेता हुआ नज़र आ रहा हैं ।